काफी सारी बस खड़ी हुई हैं।

यहां एक शादी का मंडप दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी भैंस दिखाई दे रही हैं।